ये एक जिम दिख रही है जिसमें बहुत सारे लड़िकन एक्सरसाइज कर रहे हैं एक्सरसाइज करने की मशीन रखी हुई है।

शटर दिख रहा है | एक ऑरेंज कलर का काउंटर बना हुआ दिख रहा है ओय के ऊपरे चॉकलेट के डिब्बे लगे हुए हैं | बहुत सारे पोस्ट रखे हुए हैं ।

ये एक बस स्टेशन दिख रहा है जहाँ पे तीन बस दिख रही हैं दो बस वाइट कलर की और एक ब्लू कलर की है |

एक कैंची रखी हुई है स्प्रे रखा है एक बॉटल रखी है पीले कलर की डलिया रखी हुई है।

ये एक स्विमिंग पूल दिखत बा जिसमें दो लड़िकान दिख रहे एक बिल्डिंग दिख रही है।